सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

गाड़ी का शोरूम दिखाई दे रहा--

उसके ऊपर लिखा है।

कुछ बांस पड़े हैं।

ज्यादा आदमी बैठे हुए --

और एक गाड़ी--

है जे जी एच गार्डन और उसमें--

पार्क दिखाई दे रहा--

इसमें कुछ झूले दिखाई--

पंखे और ए_सी लगी--

पंजाबी में लिखा हुआ --